एगो बहुत बड़ा गार्डन के गेट हौला एकरा के बाहर रउआ --

एहिजा हमनी के एगो बहुत लम्बा उ बड़ा ईमारत नजर आला।

जेकरा डिज़ाइन काफी बहुत सुंदर बा अ इ सफ़ेद अउ गुलाबी रंग में नजर आ रहल बा।

एइजा हमनी के एगो जूनियर डी.पी.एस. के बोर्ड नजर आ रहिल बा जेकरा के ऊपर नीला और सफेद रंग के फ़ुग्गा लगल बा।

जेकरा के एक गार्ड हबा।

रउवा लोगन यहाँ देखत बानी की एगो जिम के फोटो दिखाई देता एकरा के ऊपर हमको तीन गो मशीन रखल नजर आ रहल बा।

मरूती का ब्रेजा कार खड़ा बा।

जेकरा के निचे एगो लड़का खड़ल बा।

एहिजा हमनी के एगो फोटो में समस्तीपुर ड्राई एंड मस्तीपुर --

करके कोय दुकान दिखाई दे रहल बा जेकरा के ऊपर एगो बैनर लगा बा जिसके में भोला बाबा के फोटो बनल बा।